ए_टी_एम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। ए_टी_एम के बाहर गाडिया खड़ी हैं। साइड से सीढ़ियां है।

चित्र मेले का है। जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं चित्र लगे हुए हैं (है) झूलों पर बच्चे घूम रहे हैं।

चित्र एक जगह का है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लिखा है आईसीआई बैंक। नीचे दुकाने हैं। बाहर एक्टिवा खड़ी है बाइकें खड़ी हुई हैं।

चित्र एक मैदान का है जिसमे आस-पास पेड़ है। ज़मीन पर मिट्टी पड़ी है। दूर एक घर दिख रहा है।